यह एक शॉप की पिक है जिसका नाम मोची है उसके बगल में जीरो फाइव लिखा हुआ है।

यह एक डैम की फोटो है देखिये काफी बड़ा डैम पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है | यह डैम पे देखिये मशीन भी है जो गेट खोलने के काम में आती है ।

यह एक जिम की फोटो है जिसके सामने मिरर लगा हुआ है। बैठ कर जिम कर रहा सामने ग्रीन कलर की मैट भी बिछी हुई है।

और इसके आसपास बाउंड्री भी है और दीवाल पे जाे है न उसपे काई लगी हुई है पानी की और --